ये पेट्रोल लेने की प्रयास करें यह रात हो चुका है इसलिए यहाँ पर रात बोल जा --

ये लोग चोटियों पे लाल कलर के कुछ बांधे है बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में।

एक साइकिल खड़ा हुआ है। नीचे में घास बहुत सारे हैं। बहुत सारे पत्ते हैं पेड़ पे।

इसके पीछे में लगे वो सिन बहुत ही खूबसूरत दिखता --

यहाँ आ कर खरीद सकते हो बहोत सारी रशियां लगी हुई हैं जो दिखने में बहोत अच्छा लगता है ये सारे आप द्वारा टांगा गया है।

एक व्यक्ति हैं जो यहाँ पे खड़े हैं। एक व्यक्ति हैं जो साइकिल चलाकर इस रोड पे जा रहें हैं। इस रोड पे जो पट्टी लगा हुआ है सफेद कलर की --

और जमीन नॉर्मल ही लग रहा है ये अच्छा है घर के अंदर एक लाइट लगाया गया जो बहुत ही अच्छी बात --

जो उसके बारे में दर्शाता है इसके ऊपर बजा लगा दिया --